जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है इसके अगल बगल बहुत अच्छी लाइटिंग की गई है और यह--

यह पानी बहुत ही साफ-सुथरा दिख रहा है और दूर देखने पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं जो की बहुत अच्छे हैं।

जिसमें बहुत इच्छा गार्डन बना हुआ है जो की एक ग्रीनरी पार्क को भी दिखता है।

जो की देखने में बहोत ही अच्छा लगता है। इस बोट में दूर-दूर तक पानी-पानी दिख रहा है। सब पानी-पानी हो जाता है और इसमें बहोत सारे लोग सवार हैं।

जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है इस रेस्टोरेंट का खाना भी बहुत टेस्टी होता है जो कि हमारे शरीर की हाइजीन को भी--

यहां पर शासकीय कन्या शिक्षा परिषद कटनी जिला कटनी दिखाया गया है।